यह एक छोटा-सा स्कूल दिखाई दे रहा है यह एक कार्यालय जगह है जहाँ पे कूड़ा-मकोड़ा फेंका हुआ है।

यहाँ पे पन्नी-वन्नी फेंके हुए हैं स्कूल के अंदर घास है पेड़ हैं और पेड़ सब भी हैं और औ--

यहां पे एक रिसोर्ट है जिसका नाम मैरेज प्लेस कम रिसोर्ट है।

इन अंकल ने पहना है टाय शर्ट एंड ऊपर से स्वेटर और मफलर दिए हैं बच्चों के सर मुंडी सिर्फ दिखाई दे रहा है।

और छत पे लगाया गया है अंदर ए.टी.एम. मशीन है उसके अंदर एक ए.सी. दिखाई दिया जा रहा --

एक इंसान खड़े होकर बोट को चला रहा है ऊपर कौवे सब उड़ रहे है एक और बोट है जिसमे एक इंसान बोट चला रहा है और सिर्फ उस पे दो ही इंसान है।

यहां पे पोस्टर चिपकाया गया है इ बाहर एक गेट है लोहे --

अ फोन से फोटो लिया जा रहा है विथ स सेल्फी स्टिक .

कमंडल रखा हुआ है टिका का सामग्री सब रखा हुआ है।

जहां पे कुछ बाइक्स लगी है ई-रिक्शा सब लगी हुई है पेड़ है ऊपर एक-दो भालू बनाये है आमना-सामनी।